जैसे की गाइस आप देख सकते हैं ये रूम है रूम है जोकि बड़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगो में भी जो है बड़ा ही महंगा रूम मिलता है।

बता सकते हैं कि ये एक नीचे का नज़ारा है और इसमें लोग दिख सकते है। सामने भी थोड़ा छोटी छोटी टेबले भी पड़ी हैं।

एक जो घूमने के लिए अभी आया है जो अपनी बाइक खड़ी करके जो अपना घूम फिर भी रहा है।

ह जो कुछ लोग नहीं जानते होंगे कुछ लोग जानते है गाइस --

इसमें छोटे छोटे लोग तो बैठने नही जो करोड़पति लोग है वही लोग अपना फ्लाइट से जाते है जो छोटे लोग होते अपना गाड़ी से ही बसेरा करते हैं।

की आप सब जानते होंगे ये दृश्य यहाँ पर होटलों पर काफ़ी जगह न्यूज़ पेपर में मिलती है इन्हें जलेबी बोला जाता है।